एगो मंदिर है एगो बगल में पेड़ है एगो दू गो तीन गो बगल में एगो स्कूलों ने है।

गेट है एगो दुगो तीन गो चार गो पाँच गो ओकरा अगल-बगल में पेड़ हेय एगो दुगो तीन गो चार गो पाँच गो में लाल लाल पत्ता हेय ओकरा नीचे हूं घास जमल हेय ओकरा बगल में गाड़ी हेय एगो।

एक बोर्ड है ऊपर कुछों लिखल है कर तूने काम गया तेरा नाम।

बगल में एगो घर ओके बगल में गाड़ी लागल या एगो दूगो तीन गो चार गो रोड पर अथी लागल या सुधा वला गाड़ी के गाड़ी।